एक ब्रिज का सीन नजर आ रहा है ये ब्रिज काफी सुंदर लग रहा है इस ब्रीज में बहुत सारे गेट दिख रहे है।